वे सामने दो गिलास भी रखे हुए हैं।

वहां एक कोड भी लाल कलर का लगा हुआ है।

व्हाइट कलर की बिल्डिंग है इसके साथ में एक येलो और पिंक कलर की भी बिल्डिंग है।

और इसमें नेगर निगम की खाड़ी भी जा रही है।

यह एक स्कूल का चित्र है जिसके बाहर बोहोत सारे व्यक्ती वे महिला वे पुरुष खड़े हैं।

इसमें एक ब्राउन कलर का टेबल भी है और एक अलमारी है सामने ब्रा ए_सी भी लगा हुआ है।

यहां एक स्विमिंग पूल का पिक्चर है। उसके अंदर एक बोट भी है।

यह एक पहाड़ का चित्र है जिसपे बहोत बड़ी बड़ी चट्टानें है।

चट्टान का रंग लाल है और यहां बहोत सारी हरियाली है।